चार लोग दिखाई दे रहे हैं।

और इस बस पे कुछ ल लोग टँग रहे हैं।

वाइट कलर की लाइट्स हैग्रिडेन है।

फिर जंगल दिखाई दे रहा है। पहाड़ी दिखाई दे रहीं हैं।

यहाँ पर एक स्टोर दिखाई दे रहा है जिसका नाम केशरी है।

उत्तर प्रदेश का दिखाई दे रहा है।

यूपी पे बी.टी.टी.ओ. द्वारा --